बहुत सारा बाइक लगा हुआ है टीना का घर है।

ये गोदाम है गोदाम बहुत बड़ा गोदाम है।

और मकान का साइड में शेटर भी लगा हुआ है बोर्ड भी टंगा हुआ हैं।

बहुत सुंदर टाइल्स मार्बल बैठा हुआ बहुत सुंदर लग रहा--

से बहुत बड़ा फील्ड है पेड़ पौधा भी लगा--